यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसको पूरी लाइटिंग की गयी है| लाइटिंग लाइट सीरीज से डेकोरेट किया हुआ है फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं।

जहाँ पर अ कुछ बॉडी मसाज थेरेपी दी जाती है अ यहाँ पर और यहाँ पर एक पर्सन जो की लेटे हुई है बेड पर और जो दूसरे पर्सन उनको अ कुछ बॉडी मसाज थेरेपी दे रहे है थेरेपी इस दे रहे है।

यहाँ पर एक गार्डन है ग्राउंड है जिसमें ग्रीन हरी दुबा लगी हुई है और यह पर एक पर्सन है जो की लेटे हुए है जिनके शायद पैर में मोच आई है।

यहाँ पर एक शॉप है और जिसमें अ जिसके कांच लगा हुआ है बड़ा सा और ये जो की पालर है अंदर कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं।

कुछ यहां पर अ-अनार रखे हुये है और कुछ ड्राय फ्रूट्स रखे --

और जिसमें ऑटो है और उसको पकड़े हुए एक जेंट्स है जो की एज्ड है जो की वाइट कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए है वो खड़े है।

पर और कुछ लोग खड़े हैं जो की फादर है कुछ लोग खड़े हैं और जो की अपनी फोटो क्लिक करा रहे है फोटो खिंचा रहे है खड़े हो कर यहाँ पर।

यहाँ पर एक बस खड़ी हुई है और जो की रेड और वाइट कलर की बस --